अब मैं आखिर के दो सामान्य एरर्स पर हूँ जिसे मैंने शामिल किया है
और हम कठिन वाले से शुरू करेंगे
यह पीएचपी हेडर है और लोकेशन पर जाने के लिए हम हेडरफंक्शन का उपयोग कर रहे हैं
और यहाँ मुझे कुछ एचटीएमएल कोड मिले हैं
यह एक हेडर टैग है मैं वेलकम लिख रहा हूँ
और हमारा गोटो वेरिएबल गूगल डॉट कॉम है
यदि गोटो मौजूद है जो कि इस समय है हम पेज उर्ल गूगल डॉट कॉम को अनुप्रेषित करने जा रहे हैं
अभी यह एक एरर देगा
और एरर है Oh
यूएम अच्छा इस वजह से ओ ब स्टार्ट
चलिए इसको हटा देते हैं
यह यहाँ नहीं होना चाहिए था
यह कोड एररको सही करने के लिए है
माफ़ कीजिये तो हम पह्प हेडर पर जाएँगे और हमें Welcome
और एचटीएमएल कोड मिल गया
फिर एक वार्निंग आती है कैनोट मॉडिफाई हेडर इन्फॉर्मेशन - हेडर्स अलरेडी सेंट बाय और यही सब
अच्छा तो हमारे हेडर्स पहले से ही भेजे जा चुके हैं
वैसे यह लाइन संख्या है
1 2 3 अतः यदि यह आपको फीडर डॉट पह्प कोलोन 3 प्रकार की एक एरर देता है तो एरर लाइन संख्या 3 पर हुई है
अतः यहाँ पर एरर है लाइन 3 पर ठीक है
और यह एरर लाइन 9 द्वारा हुई है तो जब आप यहाँ जाते हैं हमारा हेडर फंक्शन है
अतः इसके होने का कारण यह है कि हम पहले से ही एचटीएमएल कोड भेज रहे हैं
यदि हम इसे कमेन्ट कर के हटा रहे हैं और मेरे रिफ्रेश करते ही हम गूगल पर अनुप्रेषित हो जाएँगे
लेकिन बात यह है कि हम इस वेल्कम हेडर को यहाँ चाहते हैं
और वस्तुतः आप हेडर फंक्शन के पहले एचटीएमएल नहीं रख सकते हैंइस फंक्शनके लोकेशनऔर दूसरी विशेषताओं पर जाने के लिए
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए
जैसा कि आपने एक मिनट पहले देखा था ओब अंडरस्कोर स्टार्ट
यह क्या करता हैयह हमारे लिए इस समस्या को हल करता है
अतः मैं यहाँ फीडर पर आ सकता हूँ और यह कार्य कर रहा है यद्यपि यहाँ अभी भी मुझे मेरे हेडर से पहले मेरा एचटीएमएल कोड एको हुआ है
अतः बिना इसके हमें एक एररमिलती है और इस हेडरके साथ यह ठीक कार्य करता है ठीक है
शुरुआती नियम के बावजूद भी यहाँ पर हेडर से पहले एचटीएमएल आउटपुट नहीं हो सकता
यह अब तक काफी समझ में आ गया होगा
अब अंतिम वाला बहुत ही सरल है
मुझे इसे समझाने की भी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी
यह आइडोंटेक्सिस्ट डॉट पह्प नामक एक फाइल को सम्मिलित करता है जो मौजूद नहीं है
तो चलिए एक नज़र डालते हैं
उम कहाँ है ये
मिसिंग डॉट पह्प
ओह नहीं यह नहीं
ओपन डॉट पह्प
तो आइडोंटेक्सिस्ट डॉट पह्प सहित स्ट्रीम खोलने में विफल रहा इस नाम की ऐसी कोई फाइल या डाइरेक्टरी यहाँ पर नहीं है
हमारी फाइल का नाम और डाइरेक्टरी लाइन 3 पर है
अतः चलिए लाइन 3 पर आते हैं
और इस फाइल में महत्वपूर्ण कोड की सिर्फ यही एक लाइन है
हमारे पास यहाँ पर एक और वार्निंग है समावेशन के लिए आइडोंटेक्सिस्ट डॉट पह्प को खोलने में असमर्थ और यही सब
अतः हमें २ एरर्स मिली हैं
यह काफी खराब लगता है जब आपके पास एक पेज हो जो एक हेडरफाइल को सम्मिलित करता है
तब यह ज्यादा अच्छा नहीं दिखता
मेरा मतलब संभवतः आप पहले किसी वेबसाइट में गये हो और आपने यह ऊपर देखा होगा
आपको आकर्षक करने की आवश्यकता है
अतः आप सामने एक चिह्न रख सकते हैं और रिफ्रेश करें
यह अब कोई भी एरर नहीं दर्शाएगा
किन्तु इस तथ्य से छुटकारा नहीं मिलता कि फाइल मौजूद नहीं है
अतः फाइल जो की मौजूद नहीं है उसकी विषय वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाएगा
किन्तु हाँ उचित तरह से इसको देखें तो यह वाकई में काफी स्व व्याख्यात्मक है
मैंने अभी सोचा कि मुझे यह वैसे भी समझाना चाहिए
अतः हमें एरर्स का एक छोटा सा समूह मिल गया है जिनसे हो सकता है कि जब आप पीएचपी में प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपका सामना हो
यदि वहाँ कुछ और एरर्सआपको मिल रही हैं तब कृपया मुझे सन्देश भेजें और मुझे सहायता करने में खुशी होगी
कृपया जानकारी के लिए आवेदन करिये
देखने के लिए धन्यवाद
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ